और यहां आगे पेड़ भी लगा हुआ है। साइड में मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है। आगे बहुत अच्छा रोड बना हुआ है।

यह एक क्लीनिक की तस्वीर है जिसके बोर्ड पर ओपी गुप्ता क्लिनिक लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्रिश्चियन आई हॉस्पिटल है यहां एक --

ये तस्वीर बिरला इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान की है जहां पर बोहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक की चीजे रखी हुई हैं।

ये तस्वीर किसी ब्यूटी-पार्लर की दिख रही है और सामने उसके आईना लगा है आसपास लाइटें लगी हुईं --

यह तस्वीर एक वाटरपार्क की लग रही है। ऊपर की तरफ वाटरपार्क के झूले भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है। जहाँं पर गाड़ियां खड़ी हुई है और एक ट्रक भी खड़ा हुआ है।

ये पेट्रोल पंप नीले रंग का पुता हुआ हे । यहां पर से पेट्रोल मिलता हे और सब लोग पेट्रोल डलवाते हैं।